दुकान के चारों ओर दुकान के गेट के चारों तरफ बैलून्स लगाया गया है।

कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

जिसमे की बहुत सारी आदमी और औरतें बेड उम्म खड़ी है का --

कागज पे और कोई व्हाइट कलर के कागज पे कुछ पेंटिंग वगैरह बना रहीं हैं।

और नीचे दोकान दिखाई दे रही है।

एक अ अ एक साइड साइड एक दीवाल खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक ऑफिस की ये तस्वीर है का --

ब्लू हरा और वाइट और रेड कलर के बलूंस गेट पे सजे हुए दिखा --

ब्लैक कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

दो औरतें खड़ी हैं और --

तीसरे मंजिला पे घर वगेरा दिखाई दे रही है |

ये एक पूजा स्थल की तस्वीर है।

ये एक जिम की तस्वीर है।